तो फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए और ये बंदऱ इतनी मासूमियत से बैठे हैं।

नॉर्मली जो कोई क्लास है उसमें जो है एयर और एक दोनो का आना बहुत जरूरी होता है इससे एक एटमॉस्फेयर --

और दिन अस्त होने वाला टाइम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ एक धुंधली इमेज दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं कुछ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे है।

सिविल ने मास्क भी लगा रखा है क्योंकि यह इन लोगों के लिए एक सेफ्टी--

ये गंडा घाट प टाइप इमेज दिखाई दे रही है नॉर्मली ये बहुत पुराना--

एक सिस्टम हैजो कि मतलब घड़ी लगाई गई है ऐसा टाइप का भी मैंने --

यह एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है इस मंदिर की इमारत जो है काफी पुरानी है काफी पुरानी है काफी भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है इस मंदिर में--

हिल स्टेशन दिखाई दे रहा है ये हिल स्टेशन में पानी बह रहा है पानी बिलकुल दूध जैसा दिख रहा है।

इधर सब जाना लोगो को जाना काफी पसंद है ग्रीन - ग्रीन रहती है रैन सीजन में।

यह एक मम्मी दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है कोई हॉस्पिटल में किसी इंसान को ऑक्सीजन चढ़ रही है और वह वहीं पर--

कोई ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में स्लाइड भी दिखाई दे रही है बच्चों के लिए झूले भी दिखाई दे रहे हैं बैकग्राउंड भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रास अवेलेबल है।

एक कॉन्टिनुएस लाइन में जा रहे हैं वन बाय वन पानी बहुत शांति दिखाई दे रहा है।